ये सब डॉक्टर्स हैं जो के सब लोग मिलकर पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर सब लोग ठहरे हुए हैं।

और मस्जिद के अंदर एक साइकल है जो दिख रही है मस्जिद के बाहर एक चप्पल--

यहाँ पर रात हो रही है यहाँ पर बहोत सारे लोग जो सब लोग यहाँ पर ये लोग को देख रहे हैं।